इस चित्र में एक कॉलोनी दिख रही है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक फादर ने गोल्डन चोगा पहना है।

फास्ट फूड का बोर्ड लगा हुआ है।

सियाराम लिखा हुआ है।

एक फ्रिज रखी हुई है।

जिसका कैबिन लकड़ी का बना है।

कुछ बोर्ड खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक पार्क --

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट --

कुछ ऑटो दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस चित्र में भगवान की मूर्ति रखी है।

आसमान में बादल हैं।